टी.वी. दिख रही है दो-तीन बल्फ दिख रहे है।

लाइटें दिख रहीं हैं। इसमें रंगी-रंगी सजावटें दिख रहीं हैं।

आसमानी कलर की लाइट दिख रही पिंक कलर की दिख रही।

एक फोटो निकालते हुए दिख रहा है।

पेड़-पौधे दिख रहे हैं। रोड पे भी कलर दिख रहे --

वे गेट दिख रहे हैं खिड़कियां दिख रही। दो बैनर लगे हुए दिख रहे --

जिसे अपनी पट्टी दिख रही है। एक लड़का बैठा हुआ दिख रहा --

ऑरेंज कलर हैतोता कलर हैपिंक वाइट कलर ग्रीन कलर ब्लैक --